यह एक रेलवे रोड दिखाई दे रहा है जहां एक पेड़ भी बहुत से पेड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े।

बिजली के खंभे भी खड़े हुए बहुत से और बिजली के तार जा रहे हैं।

रोड पर बिजली के खंभे खड़े हैं और बिजली के तार भी जा रहे हैं।

यह सोफा बहुत ही अधिक सुंदर देखने में लग रहा हैं।

यह एक रिक्शा दिखाई दे रही है।

इसका कलर लाल कलर है और यह बिल्कुल नई दिखाई दे रही है।

कमरे के अंदर अलमारियां रखी हुई है बहुत सी और इन अलमारियों के लॉक लगे हुए हैं।

सामने छोटी छोटी घास दिखाई दे रही है सामने पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह बहुत सारी हरी मिर्च है जो एक व्यक्ति उठाकर पन्नी में रख रहा है।

और तालाब के पास हरी हरी घास बहुत ही सुंदर लग रही है।

एक शीशे की मेज भी रखी हुई है मेज के अंदर बहुत से अंगूठियां भी दिखाई दे रही हैं।

बोहोत से ड्रम हरे-हरे ड्रम दिख रहे हैं और एक ठेला भी है।

कमरे के अंदर बहुत से छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं।

और मेज पर एक स्टील का टिफिन भी रखा हुआ है।

इस दुकान के अंदर कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं और उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं।

शीशे की मेज पर एक बैग भी रखा हुआ है।

यह एक बहुत सुंदर होटल दिख रहा है यहां बहुत सी कुर्सियां हैं मेज हैं गोल वाली।

और लोहे की गोल गोल खंभे--

यह एक बैंकट हॉल है यहां पर सोफे रखें गए हैं।

समुद्र के अंदर पानी का जहाज दिखाई दे रहा है।

जहां इसके बाहर बहुत से आदमी खड़े हुए हैं।

सामने एक तूफान पंखा दिखाई दे रहा है।

और उसके पास कुछ झाड़ू जैसे रखा हुआ है।

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यह पेड़ नीम का दिखाई दे रहा है।